ऊपर में पोस्टर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक आदमी के हाथ में हेलमेट है वो हेलमेट पहेन रहा है।

यह एक जिम का फोटो है इस जिम में बहोत सारी मशीन रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

लाइट जल रही है एक आदमी खड़ा है उसने नीले रंग की टी शर्ट और काले रंग की पैंट पेहन रखी है और हाथ में मोबाइल पकड़ रखा है।

और पानी में घास भी निकले हुए हैं।

दुकान के अंदर एक आदमी खड़ा दिखाई दे रहा है जिसमें लाल रंग की टी शर्ट और नीले रंग की --

चॉकलेट कलर का है इसमें बिस्किट बहुत सारे चॉकलेट भी रखे हुए हैं।

कुर्सी का रंग हरा कलर का है।

ये मंदिर बहोत ही सुंदर है सफेद रंग का पत्थर भी लगा हुआ है और एक कूलर भी रखा हुआ है पंखा भी रखा हुआ है।

और दीवाल भी हरे रंग का दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में जन उपयोगी भवन दिखाई दे रहा है भवन के बाहर ऊपर में लिखा हुआ है।